यह एक रात का या फिर सूरज डूबता उस टाइम का नजारा है पानी है पेड़ है तलाब है दिखाई दे रहा है और खम्बे बोहोत सारे है जिस पे लाइट का बिजली का तार गुजर रहा है और तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है अँधेरा होने को है।

तीन कुर्सियां रखी हुई है गद्दे दार जिसको सोफा सेट बोला जाता है वैसे कुर्सियां है एक में तीन सीट है एक ही में एक में दो है और लकड़ी का बोहोत अच्छा अच्छा लकड़ी का बना हुआ है नीचे टाइल्स बिछा हुआ है और बोहोत सारी लकड़ियां रखी हुई है कुर्सी के पीछे।

इधर ये बिल्डिंग है नीचे शायद नया-नया बना है शटर लगा हुआ है बाहर बोहोत सारे मोटर साइकिल है ऊपर बिल्डिंग शायद ढलाईया हुआ होगा बोहोत सारे बास पर टिकी हुई है बगल मे एक पोल है जिसमे बिजली का तार गुजर रहा है।